और हुआ है घृल से और यहां पे पेर लगा हुआ है।

यहां पे एक यहां पे बहु सारी कारें हैं। येलो कलर की कार है। एक व्हाइट कलर की कार है।

साइड में से अ बहुत जंगल है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इधर में एक नाला है। साइड में से अ बहुत जंगल है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इधर में एक नाला है।

और चार लोग बैठे हुए हैं और एक लोग दो लोग खड़े हैं चार लोग बैठे हुए हैं।

उम् सलाद को काट के रखा हुआ है और नीचे में एक टेबल पे रखा हुआ है।